यह एक ट्रेन का पुल दिखाई दे रहा है‌ ऐ जिसके ऊपर से ट्रेन जाती हुई दिख रही है और साइड में नीचे से --

और वहाँ कुछ दो व्यक्ति खड़े दिखाई दे रहे हैं। साइड में कुछ पीली मिट्टी भी दिख रही है। वहाँ एक व्यक्ति भी दिख रहा है। आसमान दिख रहा है और धूप निकली हुई है और ये दिन का समय है।

और ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है और साइड मे एक हरे वृक्ष दिखाई दे रहा है।

ए सामने बड़े-बड़े पत्थर की चट्टानें दिखाई दे रही हैं और एक रोड बना हुआ दिख रहा है। वहां सुज्ञस --

सु बेगर पत्ती वाले वृक्ष दिखाई दे रहे और कुछ घास भी दिखाई दे रही है। जंगल झाड़ी जैसा एरिया दिखाई दे रहा है। धूप निकली हुई है और ये दिन का समय --

और बाहर में सीढियों में कुछ हरे कलर की मैटे बिछी हुई दिख रही हैं और एक साइड स्टील की जाली का फ्रेम भी है।

रखा हुआ दिख रहा है और यह रात का समय है।

और साइड में एक लेडीज भी दिखाई दे रही है और ऊपर सीलिंग मे कुछ छोटी छोटी लाइट जलती नजर आ रही है और ये रात का समय है आसमान काला --

सामने एक मिल्क दुकान दिखाई दे रही है जहां बोहोत से कई किस्म की मिठाइयां रखी हुई पेड़े रखे हुए दिख रहे हैं और कुछ --

और ये दिन का समय है धूप निकली हुई है और बाजू में एक कमरा और दिख रहा जिसमें लोहे के दरवाजे --